आस पास कुछ और भी लोग दिख रहें हैं।

सामने सीढ़ीया लगी हुई है यहां ट्यूबलाइट लगी है एक घड़ी भी--

यहां नीचे टाइल भी लगी हुई है।

और भी बोर्ड लगे हुए हैं अमनदीप अस्पताल पठानकोट भी लिखा हुआ है वैलनेस क्लिनिक भी लिखा है।

और ए_टी_एम के अंदर कुछ व्यक्ति गए हुए हैं।

बहोत सारे घर दिख रहे हैं।

सामने एक बड़ा सा हॉल है हॉल के अंदर एक बड़ा सा काउंटर टेबल बना है।

ये एक आई हॉस्पिटल है बाहर दुकानों के शटर बंद हैं।